यहां हम देख सकते हैं यहां पे खाली जगह है जगह में आप देख सकते हैं यहां पे काफी सारे कपड़े हैं रखें हैं दरिया यहां पे रखि हैं देख सकते हैं।

अंकल आंटी खड़े हैं किन किसी ने बैग टांगा हुआ है तो किसी ने क्या और यहां सामने कुछ ऑटो हम देख पा रहे हैं।

लिखा गया है यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा डोर बनाया गया है सामान आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से शिफ्ट किया गया है।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

बहोत प्यारे लग रहे है ये सब यहां पे अलग अलग पौधे है देख लीजिए यहां पे ग्रीन कलर का यहां पे सेट लगा हुआ है।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमें यहां पे एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग के इधर आप देखते हैं अनुज गुप्ता यहां पे लिखा गया है।

रेस्टोरेंट बना हुआ है रेस्टोरेंट में आप देख सकते हैं काफी सारी चीजें यहां मिलती है कोल्ड काफी फास्ट फूड सब मिलता है बाहर छोटे छोटे गमलों में पौ --

जैसा की हम यहां पे देख पा रहे यहां पे एक बैंक है बैंक मे आप देख सकते है कितनी प्यारी फैसिलिटी की गयी है।

पौधै आप देख सकते है काफी प्यारे छोटे छोटे यहाँ पर पेड़ हैं ग्रीन कलर की शिट हैं सामने एक बिल्डिंग बनी हुई हैं।

यहां हम देख पा रहे है यहां पे एक रास्ता बना हुआ है देख सकते है इसके पास साइड में कुछ हरियाली सी है।